खूबसूरत भी दिख रहे हैं अच्छा खासा है | बहुत सुंदर लग रहा है जवा भी और लेडीज साइकिल ढेर है इसमें | तो --

इ भी ठीक कराया गया है फोटो बहोत अच्छा लग रहा है देखने में खूबसूरत है और हैं।

यह बड़े-बड़े ऑफिस है जो की बहोत खूबसूरत लग रहा है देखने में और बहोत ज्यादा सुंदर है।